मतलब आप देख सकते हैं एक शख्स जूते का निशान तक नहीं पड़ा हुआ क्या सफाई है ऐसी मैट मुझे भी चाहिए।

बाइकै नज़र आ रही हैं बहुत साफ-सुधरी और सफाई का बिल्कुल खाल रखा हुआ है।

हर नहीं होना चाहिए सबको बराबरी का सुकून देना चाहिए सबके साथ एक जैसा--

धोखा देंगे या फिर उनको साथ हरकतें करेंगे उन्हें मजबूर करेंगे तो फिर वो यही हरकतें करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख ।

बात ये है लेकिन लोगों से किस तरह से बचेंगे एक दूसरे के लिए--

कल आया हूं मैं तेरे ही दर पर--

रवाना हो जाएगा डीजीटाइज्ड का काम सही नहीं हो जाता तबतक आप इसको देखते रहें।

यहां पे गवार फटा यानी कि एलोवेरा लगा हुआ है और कुछ के अंदर पर्पल कलर के फ्लावर्स है एक।

खुशबू को महसूस कर सके यहां पे एक चुटक में जो मिट्टी है आपकी बहुत फायदेमंद है यहां पे हरा हर एक आगे।

ये जगह भी बहुत हसीन मालूम होती है यहां पे बेशुमार बच्‍चें यहां पे होने के लिए --

इनमे खड़े हुए है और यहाँ पे किसी चीज़ की प्रैक्टिस चल रही है लोंग बहुत ज़्यादा मज़े कर यहाँ पे यहाँ पे शाम का मौसम दिखाई दे रहा है हल्की हल्की धूप --

अ फ्री हैंड होके भी जा सकते हैं यानि की बगैर कुछ लिए भी जा सकते --

दूसरी पे कोई ये सलवार पहने हुए हैं और कंधे पर उन्‍होंने भी कुछ लिया हुआ है लेकिन दो लोग सामने खड़े है ठीक है और --

ये अपने आप को फिट करने की कोशिश करनी है लेकिन घर के काम करने में लोगों को मौत आती है।

घर के काम करके भी अपने आप को सही कर सकती है लेकिन नहीं इन्होंने बाहर जाना है पहले वर्जिश करनी है उसके बाद ही अपने आप को सही करना है लातों के बातों से नहीं मानते--

बहुत अच्छी यहां पे ग्रीनरी नजर आ रही है यहां पे बेशुमार लोग हैं और यहां का समय बहुत प्यारा लग रहा है।

दो-दो कश्ती यहां पे नजर आ रही हैं चार कौवे यहां पे नजर आ रहे हैं लोग यहां कश्ती में --

रूम है ऑफिस है और यहाँ पे चे अ बाहर चेयर कुछ --

दी हुई हैं इंसान को बैठने के लिए वेटिंग एरिया भी अच्छा है यहां चेयर दी हुई--

यहाँ पे लोपीरा सेप शॉप है जो कि आपको नज़र आ रहा है बड़ा बड़ा लिखा हुआ है।

बाहर ग्रीनरी भी बहुत बढ़िया नज़र आ रही है इसके अंदर झाली --

एंड वहां कोई चीज लगी हुई है यहाँ पे टीन की छत लगी हुई है और --

बेशुमार लोग यहां पे आकट अ धूप सेंक सकते हैं यहां पे बाहर एक सीमेंट की बोरी प --

ऐ बैठे हुए हैं जिसके जरिये वो अपना आर्ट करते हैं और इन टीचर इनको कंट्रोल --